यह एक मेन रोड है और उस मेन रोड में एक टेम्पू जा रहे हैं जो कि उस टेम्पू में बहुत लोग बैठे हैं और टेम्पू से बहुत सुविधाएँ मिलते हैं ।

और बहुत लोग यहाँ फ़ोटो खीचने के लिए आए हैं इसको बहुत लोग खरीद के ले जांएगे बहुत ही अच्छा लग रहा है ।

और इसके दोनों साइड बहुत ही बड़ा और अच्छा पहाड़ है उसपे हमलोग चढ़ के चढ़ने में बहुत अच्छा लगता है उस पहाड़ पे बहुत ही --

एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सा स्कूल है। इस स्कूल में बहुत ही अच्छे से पढाई होते है। बच्चे लोगो को सब सिखाया जाता है। बहुत सारे टीचर्स है अच्छे से पढ़ाते है और बहुत ही बड़ा स्कूल है। इस स्कूल में कंप्यूटर का भी सुविधाएँ है जिसके कारण बच्चे लोगो को --